इस इमेज में बस बोर्ड बताया गया है जहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है उस बैनर में लॉन्ड्री सर्विस की जाती है जहाँ पे बैनर में लिखा गया है की यहाँ पे कपड़े धुले जाते हैं।

इस इम-इमेज में हमें एक नदी बताई गयी है जिसके आसपास बहुत से पेड़ लगे गए है उस नदी के पास एक रोड है जहां पे लोगन घूम रहे है।

जो बच्चो को दिखाया जा रहा है वो एक नकली स्केलेटन है। वहाँ ये जो प्रीजर्व की गई है तथा बॉटलों में रखी गयी है जो बच्चो को साइंस पढ़ने में आसान --

के आस-पास तीन चार और मूर्तियाँ हैं उसके पीछे एक कलाकारी है जो ईंट से बनी हुई है वहाँ पर कोई ईंट का रंग ऑरेंज कलर का हैं तथा वो म्यूजियम बहुत बड़ा है।

घर हैं वहां बिल्डिंग नीले कलर की है उसके ऊपर बहुत बड़ी टीन लगी हुई है।

--लोगन खड़े हुए हैं उस ट्रेंड कि बिल्डिंग काले कलर की है वहाँ पे एक औरत का फोटो लगाया हुआ है।

इस इमेज में हमे एक मॉल की इमेज बताई गई है जिसमें लिखा गया है फैमिली मार्ट वहाँ पे अंदर बहुत से लोगो खड़े हुए है तथा एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है।

इस इमेज में हमें दो एस_यू_वी एक घर के सामने खड़ी हुई बताई गई है और घर का रंग सफेद कलर का है तथा जो दो एस_यू_वी है।

वहां पे बहुत से बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं वहां पे एक बड़ा-सा मैदान है जिसके अंदर बच्चे खेल रहे हैं अपने माता-पिता के साथ।